c और c ++ में loops पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
for loop
while लूप और
do…while loop हम इसे कुछ उदाहरणों की मदद से करेंगे
हम कुछ सामान्य errors और उनके समाधान भी देखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं
उबंटु operating system version 1104
gcc और उबंटु पर g ++ compiler version 461 का उपयोग कर रहा हूँ
loops के परिचय के साथ शुरू करते हैं
loops का कई बार निर्देशों के समूह को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है
उद्देश्य के आधार पर उन्हें तीन प्रकार में विभाजित किया गया है :
while loop do… while loop और
for loop पहले while loop के साथ शुरू करें
while loop शुरूवात में condition का परीक्षण करता है
संरचना है while condition
bracket में statement block
अब do… while loop पर चलें
condition मान्य होने से पहले do while loop कम से कम एक बार निष्पादित होता है
संरचना है
do brackets में statement block
bracket के बाद while condition
आप देख सकते हैं कि condition को अंत में जाँचा है
अब while loop और do while loop पर एक उदाहरण देखें
मैंने editor में code पहले से ही टाइप किया है
इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारी फ़ाइल का name while c है
आज हम while loop का उपयोग करके पहले 10 numbers का एडिशन सीखने जा रहे हैं
अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header file है
main function के अंदर हमने दो integer variables x और y घोषित किये और और 0 के लिए initialize किया
यह हमारा while loop है
while loop की condition हैx is less than or equal to 10
यहाँ x की value y की value में जोड़ी गई है
एडिशन के पश्चात प्राप्त value y में संचित होती है
फिर हम y की value print करेंगे
यहाँ x increment वृद्धि हुआ है
इसका अर्थ है variable x एक से बढ़ा है
और यह हमारी return statement है
अब program निष्पादित करें
कृपया अपने keyboard पर ctrl alt और t कीज एक साथ दबाकर terminal window खोलें
type करें gcc space while dot c space hyphen o space while
enter दबाएं
type करें/dot slash while enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
अब while loop का कार्य देखें
window का आकार बदलें
यहाँ पहले x और y की value 0 है
यह हमारी while condition है
यहाँ हम जाँचेंगे कि x 10 से कम या बराबर है जिसका अर्थ है x की values 0 से 10 तक होगी
फिर हम जोडेंगे y plus x अर्थात 0 plus 0 हमें मिलता है 0
हम y की value print करेंगे यहां हमें 0 मिलता है
फिर x इन्क्रिमेन्ट होता है जिसका अर्थ है अब x की value 1 होगी
फिर हम condition पुनः जाँचेंगे 1 is less than or equal to 10 यदि condition true है तो हम values जोड़ेंगे
y अर्थात 0 plus x जो है 10 plus 1 is 1
हम value 1 print करेंगे
फिर से x इन्क्रिमेन्ट होता है
अब x की value 2 है
हम फिर से condition जाँचेंगे
2 is less than or equal to 10 यदि condition true है तो हम values जोड़ेंगे अर्थात 1 plus 2 जो 3 देगा
हम value 3 print करेंगे
इसी तरह यह x is less than or equal to 10 तक जाएगा
अब हम do… while loop का उपयोग करके उसी तरह का program देखेंगे
यहाँ हमारा program है
ध्यान दें कि हमारी फ़ाइल का name है dowhile c do hyphen while dot c
पिछले program में यह भाग पहले से ही समझाया गया है
तो do while loop की ओर बढ़ें
यहाँ पहले loop का प्रारूप निष्पादित होगा और फिर condition checked होगी
x की value y की value में जुड़ती है और जुड़ने के बाद प्राप्त value y में संचित होती है
तर्क while program के समान ही है
अब program निष्पादित करें
अपने terminal पर जाएँ
type करें gcc space do hyphen while dot c space hyphen o space do enter दबाएं
type करेंdot slash do enter दबाएं
हम देख सकते हैं कि output हमारे while program के समान है
अब do while loop का कार्य देखते हैं
मैं window का आकार बदलता हूँ
यहाँ x और y की value 0 है
हम उन values को जोड़ेंगे जिनसे हमें 0 मिलेगा
अब y की value 0 है
हम value 0 print करेंगे
फिर x 1 से इन्क्रिमेंट होता है जिसका अर्थ है अब x की value 1 है फिर condition की जाँच होगी
आप देख सकते हैं कि loop का प्रारूप पहले निष्पादित होता है
फिर भी यदि condition false है तो भी हमें value 0 मिलेगी
यहाँ हम check करेंगे कि क्या 1 is less than or equal to 10 है
condition true है फिर से हम values जोडेंगे
अब 0 plus 1
फिर हम y की value 1 print करेंगे
फिर से x इन्क्रिमेंट होगा
अब x की value 2 है
फिर हम check करेंगे 2 is less than or equal to 10
हम यहाँ वापस जाएंगे
फिर हम values जोडेंगे 1 plus 2 जो 3 है
हम y की value 3 print करेंगे
इसी तरह conditions checked किए जाएंगे जब तक x की value 10 से कम या बराबर होगी
और यह हमारी return statement है
ध्यान दें कि यहां while condition semicolon के साथ समाप्त होती है
while loop में condition semicolon के साथ समाप्त नहीं होती
अब देखते हैं कि c ++ में ये programs कैसे निष्पादित करें
c ++ में यह हमारा while program है
तर्क और कार्यान्वयन c program जैसे ही हैं
यहाँ कुछ परिवर्तन हैं जैसे header फ़ाइल stdio h की जगह iostream है
यहाँ हमने namespace std का उपयोग करके using statement समाविष्ट किया और यहाँ हमने printf function की जगह cout function का उपयोग किया
while loop की संरचना c program के समान ही है
program को निष्पादित करें
terminal पर वापस आएँ
मैं prompt clear करता हूँ
निष्पादित करने के लिए type करें g ++ space while dot cpp space hyphen o space while1 enter दबाएं
type करें dot slash while1 enter दबाएं
आप देख सकते हैं कि output c में हमारे while program के समान ही है
अब c ++ में do while program देखते हैं
text editor पर वापस आएँ
यहां भी उसी समान परिवर्तन हैं जैसे header फ़ाइल using statement और cout function
अन्य सब समान हैं
program को निष्पादित करें
अपने terminal पर वापस आएँ
type करें g ++ space do hyphen while dot cpp space hyphen o space do1 enter दबाएं
type करें dot slash do1 enter दबाएं
हम देख सकते हैं कि output c में do while program के समान ही है
अब हम कुछ सामान्य errors और उनके समाधान देखेंगे
अपने text editor पर वापस आएँ
मानिए कि यहाँ मैं x की value increment नहीं करूँगा
save पर click करें
देखें क्या होता है
terminal पर वापस आएँ मैं prompt clear करता हूँ
program को निष्पादित करें
up arrow की दो बार दबाएं
फिर से up arrow की दबाएं
output प्रदर्शित होता है
हम शून्य देख सकते हैं क्योंकि loop में terminating condition नहीं है
इसे infinite loop के loop में जाना जाता है
infinite loop system अनुत्तरदायी बनने का कारण हो सकता है
यह program को सभी संसाधको के समय को नष्ट करने का कारण बनाता है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है
अपने program पर वापस जाएँ error fix करें
type करें x ++ और semicolon
save पर click करें फिर से निष्पादित करें
terminal पर वापस आएँ
अपarrow की दबाएं
हाँ यह कार्य कर रहा है
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
हम अपनी slides पर वापस जाएँगे
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
while लूप
उदाहरण whilex is less than or equal to 10
do… while loop
उदाहरण do statement block और
अंत में while condition
नियत कार्य के रूप में
for loops का उपयोग करके निम्न को print करने के लिए एक program लिखें
0 to 9
for loop का syntax है
for variable initialization; variable condition; और variable increment या decrement
और यहाँ loop का ढाँचा होगा
नीचे दिखाए गए link पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद